लाल रंग का लोहे का गेट है।

जो कि काफी छोटा है।

सामने काफी सारे पिलर है।

इसके दीवाल का रंग सफेद है।

सामने दो औरत बैठे हुए हैं।

नीचे जमीन पे टाइल्स लगा हुआ है।

पीछे एक पीले रंग का बड़ा जे_सी_बी है।

बगल में दीवाल दिया रहा है।

ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

इस पर बहोत सारे प्लास्टिक के डब्बे हैं।

टॉफी रखा हुआ है सामने बड़े से पोस्टर लगे हुए है ऊपर।

बगल में चैन गेट है और वहां शटर लगा है।

इसके ऊपर अल्बास्टर लगा हुआ है।

लिखा हुआ है लाल और सफेद रंग से।

हल्का शाम का समय है।

अंदर लाइट जल रहा है।

इस फोटो में लाइन से बहुत सारे दुकान है जिनमें शटर लगे हैं।

बाहर का दिवाल भी पीला रंग का है।

उसके दीवार का रंग सफेद है।

रैक जैसा बना हुआ है।

इसमें फोटो है एक।

और बगल में ए टी एम है।

इस फोटो में सामने काफी बड़ा सा नदी है।

पेड़ों का रिफ्लेक्शन पानी में बन रहा है।

इस दृश्य में एक रोड जैसा है।

जो सिल्वर और सफेद रंग का है।

और सामने बहुत ही बड़ा सा दीवाल है।

और दीवाल का गेट का रंग काला है।

पीछे काफी सारे झंडे लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक लड़की बैठी हुई है।

पन्नी मे लपेटे हुए हैं सामने दो गुलाबी रंग के अलमीरे रखे हैं।

जिसका दीवाल हरा रंग का है।

बहुत सारे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं।

नीचे बहोत सारे बैंगनी और हरे और सफेद रंग के गुब्बारे हैं।

ऊपर के बीम के बोर्डर का रंग नीला है।

नीचे बहोत सारे छोटे-छोटे पेड़ है।

अंदर बहुत सारे ज्वेलरी के सामान रखे हुए हैं।